बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा फूल है ।

बहुत ही अच्छा पार्क लगा देखने में --

तिरंगा का पेंटिंग किया हुआ बहुत ही सुंदर है पेड़ भी है।

तिरंगे को सलाम कर रहे बहुत सारा आदमी भी हैं ।

एक चौकी पुलिस भी है ।

बहुत ही अच्छा पेट्रोल पंप है इधर एक स्कार्पियो खड़ा --

उधर भी बोलेरो भी थोड़ा पेड़ भी है ।

बहुत ही सुन्दर टमाटर है ।